कुछ गमले भी रखे हुए है और दो तीन चार बाइक भी खड़ी हुई है।

यह एक बस अड्डा है इस बस अड्डे पे बहुत सारी पेड़ लगी हुई है।

बहुत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है जो कुछ पतले पतले है।

यह एक मस्जिद है इस मस्जिद में सब लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे फ्रिज रखे हुए हैं जो कुछ डबल डोर के कुछ सिंगल डोर के हैं।

उधर एक मकान भी बना हुआ है जो विंडो साफ नजर आ रही हैं।

यह एक ग्राउंड है इस ग्राउंड में दो तीन चार पांच लोग मैच खेलते हुए नजर आ रहे है।